वह एक जगह थोड़ा कूड़ा नजर आ रहा है।

यह दृश्य एक ढाबे का है।

वे सभी मुर्गियों का रंग सफेद है।

इस दृश्य में हम देख सकते हैं कि कुछ फुलवारी है।

एक कई प्रकार के फूल इस दुकान में --

वे किसी उपकरण पे देख रहे है एक पुरुष ने एक हाथ में कॉपी ले रखी--

दुकान के अंदर भी कुछ बिजली के उपकरण रखे हुए हैं।

यह बिल्डिंग सफेद रंग की है।